इस इमेज में मुझे ए मुझे बडे बडे गेट दिखाई दे रहे हैं जो लोहे के बने हुए हैं।

और इस स्टेज पे ऊपर भी पेंट लगा हुआ है स्टेज के बगल में सीढ़ी लगी हुई है और स्टेज के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस इमेज में मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है आ मुझे यहां ए मुझे यहाँ मेरून कलर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

स्टेज पर पिंक कलर का पर्दे लगे हुए हैं। व्हाइट कलर से फ्लावर का डेकरेशन किया गया है।

इन हरे-हरे पेड़ो के बीच में मुझे एक चट्टान दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्राउन है चट्टान के टॉप पर भी मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

अ जिसके बाहर वी.आई. लिखा हुआ है।